जिसके ऊपर टीन पड़ी है।

यह एक वर्कशॉप है जिसके बाहर एक बोर्ड लगा है।

इस पे लिखा है मुन्ना मोटर वर्कशॉप ।

और कुछ लोग भी हैं नीचे हरे कलर की मैट पड़ी है।

और कुछ हरे भरे पेड़ लगे हैं एक कार भी है।

और यहां एक आदमी बैठा है कुछ पंखे लगे हैं।

और एक लड़का ऊपर छत पे खड़ा है।

यहां पानी के टैंक भी रखे है ऊपर कुछ बादल है।

यहां पे कुछ दुकान है और एक ए_टी_एम बना है।

जीसके बाहर शीशे का गेट लगा है।

और ऊपर जंगले लगे हैं और बाहर कुछ हरी भरी घास है।

और एक लेडिस खड़ी है एक बैठी है।

ये एक बहोत बड़ा पंजाब बैंक है इसके आसपास और भी बिल्डिंग है।

उस काउंटर के ऊपर कुछ फाइल और बुक रखी है।

और उनके ऊपर कुछ तकिए भी रखे हैं।

ये एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसमें बहुत सारे गेट बने हुए हैं।

ये एक बहुत बड़ा महल है।

जिसमें बहुत सारे दरवाजे बने हैं और कुछ खिड़की भी बनी है।

उनका चेहरा छुपा है और पीछे कुछ मूर्ति बनी है।

और फूल भी लगे हैं और एक लड़का है।

ये ऊपर कुछ पंखे रखे हैं जिनमें कुछ व्हाइट कलर हैं।